दिखाई दे रही है बस भी दिखाई--

दे रही है और मुझे गोडाउन भी--

और कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं।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

दे रहें हैं मंदिर में मुझे--

और कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं मुझे तालाब के अंदर एक--

मुझे एक गार्डन दिखाई दे रहा है।

मुझे एक बगीचा दिखाई दे रहा है।

मुझे एक दुकान दिखाई दे रही हैं।

ये कैमरा भी दिखाई दे रहा--

है बैंक में मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारे झंडे भी दिखाई दे रहे हैं।

मुझे एक गार्डन भी दिखाई दे--